बोट के सामने और वह सामने की ओर देख --

यहाँ बहुत काला व सफ़ेद रंग से सजाया गया है फर्श।

सजाया गया है इसकी दीवारों पर तरह-तरह की आकृति --

यहाँ दूर ईटों से बना कुछ नजर आ रहा है जो की --